गेट के निचे एक और लोहे का गेट हैं जोकि बंद हैं उसके ऊपर एक बहोत अच्छी सी पेंटिंग टंगी हैंगेट के बगल से खूबसूरत घर बिल्डिंग दिख रही हैं जोकि ग्रीन कलर से पेंट दिखाई दे रही हैं।

इसमें काफी साडी हमे दिखाई दे रही है।

सेंटर में गार्ड के लिए छोटा सा रूम बनाया गया है गेट के उस पार हमें बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है।

इस जिम में काफी सारी एक्सरसाइज़ की हमें तरह-तरह की मशीने दिखाई दे रही है।

यहां हमे एक बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है। जिम में काफी सारी मशीनस रखी गई है। यह सारी मशीन एक्सरसाइस मशीन है।

यहां हमे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग व्हाइट कलर से बनी हुई है उसमे ब्लू कलर के कांच का डेकोरेट है सामने ब्लैक कलर के बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए है।

यहाँ हमें एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें दो कलर हैं और एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।

यहाँ हमें एक बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है जिम में आस-पास का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर से किया गया है।